रुकी है यहां पर एक पेड़ के टीला पर एक लोग बैठे हुए है और यहां तरह-तरह का घर है और हरियाली छायी हुई है और ऊपर से फोटो घिचा गया है तो ऊपर से बहुत सुन्दर लग रहा है।

दूर-दूर का फोटो आ रहा है और सुंदर लग-लग रहा है हरियाली है घर है।